यह एक लग्जरी होटल है जो जिसमें बहुत काफी सारी बत्तियां लगी हुई है यह बहुत ही बड़ा है और विशाल है इसमें बेड कमरा सभी लगा हुआ --

से गिद्ध रखा हुआ है यह काफी बड़ा और विशाल है यह बहोत ही बढ़िया जानवर है |

एक सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं जो --